दो गाड़ियां लगी हुई है वहां ब्लैक और वाइट कलर की दुकान के अंदर बहोत सारे कस्टमर खड़े है।

एक गाडी लगी हुई हैं जिसकी सर्विस होनी हैं।

सामने एक बिजली का खंभा है खंभे के बाहर से--

यहां पर हारमोनियम वगैरा रखे हुए हैं दो--

पिलो भी रखे हुए हैं यहां पर बहोत सारे--

ये यहां पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं।

सर्विस सेंटर दुकान के बाहर एक बाइक लगी हुई है।

द टायर हाउस थ्री डी बेस एलाइनमेंट लो व्हील्स मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं।

ऑफिस के अंदर टेबल पर लिखा हुआ है डॉक्टर अविनाश कुमार--

और टेबल के ऊपर प्रिंटिंग मशीन भी पड़ी हुई है।